तथा बर्फ में स्टे इसकेटिंग करने में अत्यधिक अं मजा आता है।

और रक्षाबंधन पर इसकी बिक्री अधिक होती है तथा लोग इसे अधिक मात्रा में खरीदते हैं।

यह एक पार्क है जहां पर अनेक प्रकार के झूले लगे हुए हैं |

इस बैंक में लोग अपने धन को सुरक्षित रखते हैं।